ये नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक पहाड़ियाँ सी नजर आ रही हैं। यहाँ पर आसमान दिखाई दे रहा है।

काफी दूरी पर कुछ ऑटो दिखाई दे रहें हैं। यहाँ पर किसी ठेले का कुछ हिस्सा नजर आ रहा है। यहाँ पर एक जगह पर पेंटिंग से दो तस्वीरें बनी हुई नजर आ रही हैं।

इस इमेज में एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क के ऊपर कुछ ट्राफिक नजर आ रहा है।

इस इमेज में एक बड़े हॉल जैसी खुल्ली जगह नज़र आ रही है यहाँ पर जमीन पर मैट बिछाया हुआ नज़र आ रही है यहाँ पर --

बस के अंदर एक बंदा चढ़ रहा नजर आ रहा है। बस के बाहर एक बंदा --

इस इमेज में एक मैदान नज़र आ रहा है इस मैदान में हरे रंग की घास उगी हुई दिखाई दे रही है ।

इस इमेज में किसी जगह की कंस्ट्रक्शन हो रही दिखाई दे रही है यहाँ पर काफी ईंटें पड़ी हुई हैंयहाँ पर कुछ रेत या बजरी --